और गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनी हुई है और पीले रंग का शर्ट पहनी हुई है लड़की है।

पीछे बड़े बड़े पेड़ है आसमान दिखाई दे रहा है पीले रंग की एक बिल्डिंग भी खड़ी है यहाँ पर एक आदमी खड़ा --

यहाँ पर दो क्या कचरे के डब्बे भी है जिनका रंग हरा है यहाँ पर रेलवे का प्लेटफार्म भी दिख रहा है।

काले सफेद रंग का शर्ट और ब्लै ब्लू रंग की पैंट पैहनी हुई है।

यहाँ पर बहोत सारे फूल भी है दीवारों का रंग चॉकलेटी है।